इस बाज में खुर्ची भी और फ्रिज भी एक चार बोतल ला भी अपने को देखने को मिल रहा है।

बहुत आदमी रेल्वेस्टेशन खड़े है और कुछ लोग रेल्वे बंडी के अंदर चेन्नई के लिए कोशिश कर रहे है।

और आकाशमे एक सूर्य भी यहाँ दिख रहा है।

और इधर तरफ एक छोटासा घर भी देखने को मिल रहा है इधर एक बड़े-बड़े पेड़ भी है।